यहाँ का भी लुक आप लोगो को जबरजस्त दिखाई दे रहा होगा।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे काफी--

अच्छा वाला ऐसा ही करना चाहिये इसलिए ये भी कर रहे हैं।

ये ब्यूटी पार्लर हैं देख सकते हैं यहाँ पे--

आंटी आई हुईं हैं इधर से उधर से--

हेलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे--